ये तो कोई शॉप है जहाँ पे बहुत सारे --

नीले नीले अलग अलग किस्म के वैरायटी वैरायटी बहुत सारे --

बीच में बना हुआ है और उसके पीछे घर दिख रहा है।

और खाने पीने की पूरी अ सामान बिक रहे हैं यहाँ पर --

ये एक जनरल इश्टोर बहुत बड़ी सी लग रही है और यहाँ पर बहुत सारे अ हम्म जनरल म जनरल इश्टोर के सारे सामान बिक रहे हैं।

अभी वो मेन उसका जो ग्राहक अभी कोई नहीं है यहाँ पर --

ये एक सुंदर सा घर जैसा दिख रहा है दुकान खुली हुई है एक लेडी बैठी हुई है और साइड में एक आदमी --

अन नित नाड आ नाच डांस कर रही है।

ये कोई ऑफिस है ढेर सारी चेयर लगी हुई है या हॉस्पिटल है।

और एक दीवाल पे एक छोटा सा --

ये है ये कोई बड़ा सा शोरूम हैं।

जीसमें बहोत सारे सामान बिकते हैं अच्छे अच्छे भी लोग यहां पर आते हैं एंजॉय करते हैं।

जिमिस नाम है इसका आर्ट गैलरी लग रही है कोई--

जिसमें सारा सामान बिक रहा है और ऊपर ए_सी भी लगा हुआ है।

और इसका जो है दुकानदार नजर नहीं आ रहा है।

ये कोई गोदाम लग रहा है इसमें बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

और सामने बगल में इसके घर बना हुआ है बहुत ही सुंदर है।

और नीचे वादियाँ बनी हुई हैं लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं।

खेत है जहां पे क्यारियां बनी हुई है पीछे गांव जैसा दिख रहा है ग्रीनरी बहुत है।

औ पीछे चार खिड़की जैसी मालूम चल रहा है।

और लोग अभी इसमें काम करने आने वाले हैं।

ये कोई अ लाल किला जैसा कुछ लग रहा है।

वाओ ये बहोत ही अच्छी सीन भी नजर आ रही हैं जैसे लग रहा है सरसो की लहराते पेड़ खिल रहे हैं।

ये कोई ऑफिस का फोटो है जिसमें दो ब्लू कलर की चेयर लगी हुई है।

और अ जाने के लिए एक रास्ता जैसा है उधर बना हुआ है।

ये चौकोर चौकोर इसकी जमीन है आगे जाकर एक खूबसूरत सा --

सामने बहुत ही अच्छा लग रहा है सिन मन कर रहा है कि घूमने चले जाओ।

ये तो बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे घूमने वाले सब लोग बैठे हुए हैं।

और ग्रीनरी दिख रही है पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिख रहा है साइड में पत्थर है पेड़ है।

सब कुछ है और पानी में खंभे की परछाई दिख रही है।

ऊपर से कोई जाएगा तो उसकी भी परछाई दिखेगी यहां पर।

और अ कुछ तो कर रहे हैं यह लोग --

यह कुछ बिल्डिंग वगैरह बन रही है जहाँ पर एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है।

और एक खंबा से ऐसा लग रहा है दूसरा आदमी उसे पकड़ा हुआ है और ब्लू कलर का पानी का ड्रम रखा हुआ है।

एक गेट बना हुआ है अंदर जाने का रास्ता है वहीं से --

बहोत अच्छे से तरीके से इसको सजाया गया है सामने दीवाल के पास बेसिन लगा है।

और आगे अ बड़े बड़े मतलब खंबे जैसे हैं एक विंडो दो विंडो दिख रही है घर के जैसा लग रहा है।

और पीछे में ब्लू ब्लू ये शाम का वक्त है।

और पेड़ पेड दिख रहा है उसके पीछे साइड में--

यहाँ पे आरती बुक सेंटर यहाँ पे बुक बिक रही है और बहुत ही ज्यादा कस्टमर खड़े हुए हैं।

लोग पूजा करने के लिए आते होंगे तो यहीं से बुक खरीदते हैं।

और जिसमें अ पीछे अ बहुत बड़ी सी ब्राउ बाउंड्री है वॉल है और ये ये बच्चे को कुछ करा रहे हैं।

और पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई है एक वाइट कलर की बहोत ही खूबसूरत सी कार खड़ी हुई है।

ये लगता है कोई पार्टी वगेरा का स्टेज सजा हुआ है गुब्बारों से रंग बिरंगे--

कलर के अ बैलून लगे हुए हैं और अंदर भी सजावट हुआ है।

और साइड में एक इस अ गाड़ी भी खड़ी हुई है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं ग्रीनरी है वाइट वाइट कलर से मकान भी दिख रहे हैं।

जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और एक आदमी वहाँ से फिसलकर नीचे की और आ गया है।

और ये बहोत बड़ा ये वाटर पार्क है बहुत सारे लोग यहाँ पर एयू घूमने के लिए आते हैं।